पेट्रोल पंप है और बोहत अच्छा बहोत बड़ा पेट्रोल पंप है और बाउंड्री के पीछे में पूरा घेरा हुआ है।

और पीछे में है और बाउंड्री किया हुआ है सामने में और बहुत बड़ा सा मैदान है।

दुकान है और सामने में झाड़ू उडू सब रखा हुआ है और प्लास्टिक का सारा सामान है कुर्सी उर्सी भी है।

कपड़ा का दूकान है और बहोत सारा कपड़ा है और बहोत अच्छा-अच्छा कलर का है और एक आदमी है दूकान में वो बैठे हुए है।

औरत लेकर और ऊपर में बच्चे लोग खेलने का बहुत अच्छा स्पेस है और बहुत बड़ा सा --

उम्म फील्ड है बच्चा लोग का खेलने वेलने का और सा सरिया है लगा हुआ बच्चा लोग का--

मूर्ति के पास है पूजा कर रही है सब --

और सामने में बैठने उठने का ही बना हुआ है दोनों साइड में--

स्पेस है और गाडी उड़ी भी लगा सकता है आदमी और बाहर अच्छा बड़ा सा--

स्कूल है और स्कूल बस लगा हुआ है दो दो ठो और सामने में एक गाड़ी लगा है स्कार्पिओ और रास्ता बहुत --

एयरोप्लेन है और एक आदमी खड़ा है पॉकेट में हाथ देकर और भीड़--

साइकिल उयिकिल चलाने का बच्चा लोग खेल सकता है और पेड़ नज़र आ रहा है दूर-दूर तक और ससरिया है इसमें--